बहुत ही खूबसूरत सीन है।

आसमान पूरा एकदम साफ है।

ये सब घूमने के लिए आए हैं।

सब बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

और ये सभी रंगोली बना रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत नजारा --

वे इस पाइप से पौधों को पानी डाल रहे हैं ताकि --